सोफा भी दिखाई दे रहा है और एक आदमी भी दिखाई दे रहा है।

साइकिल भी दिखाई दे रहा है मिट्टी भी दिखाई दे रही है कचरा भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहुत बड़ा टेंट दिखाई दे रहा है और ज्यादा आदमी दिखाई दे रहे हैं।

दरवाजे भी दिखाई दे रही हैं साइकिल भी दिखाई दे रहा है गाड़ी भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर दरवाज़े दिखाई दे रहे हैं पंखे भी दिखाई दे रहे हैं लाइटें भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक बस खड़ी हुई दिखाई दे रही है जिसका कलर वाइट कलर दिखाई दे रहा है।

टाइल्स भी दिखाई दे रहा है बड़ा सा रोड भी दिखाई दे रहा है।

फोन भी दिखाई दे रहा है केक भी दिखाई दे रहा है मोमबती भी दिखाई दे रहा है चेयर भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहुत ज्यादा दरवाजा दिखाई दे रहा है रेलिंग भी दिखाई दे रहा है।

तिरंगा भी दिखाई दे रहा है।